एक सुसाइस मशीन दिख रही है साथ उसे पकड़ने की चैन भी डली हुई है लोहे के खंभे है एक रोशन दार है च च चादरों के उपर है।

बारा खम्बो का शटर है भद भदे शटर एक बारा खम्बो का पानी है पथरीली जमीन है पेड़ है और एक बिना पत्तो का पेड़ है आसमान है।